इस तस्वीर में हमें एक--

यह दृश्य हमें किसी--

यह एक आइसक्रीम्स की दुकान है।

इसका नाम कॉन्टिनेंटल ढाबा है।

एरिया की दिखाई दे रही है।

कोई बिजली घर दिखाया जा रहा है।

किसी ओलंपिकस का दिखाई दे रहा है।

इमारत की नजर आ रही है।

इसमें हमें पेन्स कलर्स दिख--

इसके आस पास हमे वृक्ष भी नजर आ रहे--

उसमें हमें नाव भी दिख रही है।